उसमें जेंट्स लेडीज़ खड़े हैं।

इस दृश्य में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान दिख रहा है।

टेबल पर बहुत सारे डिब्बा रखा हुआ है।

एक आदमी पह बैठा हुआ है।

और एक साइकल पर है और फील्ड के अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे।

टावर के अगल बगल भी बहुत सारे लोग खड़े हैं।

राधा जी भी व्हाइट कपड़े पहने हुई है।

जो जैकेट पहना हुआ है और पेंट पहनना है।

जिसमें बहुत सारे कम्बोड बनाए हुए हैं।

इस दृश्य में एक बहुत सुंदर मंदिर दिख रहा है।

और सब कमबोर्ड में बहुत सारा कार्टून रखा हुआ है।

पोस्टर पर हेयर हैक्स लिखा हुआ है।

दुकान बहुत सुंदर सजाया हुआ है झालर मोती से।

के बगल में भी एक मकान है।

कान का रेलिंग बहुत सुंदर बनाया हुआ है।

रूम में बहुत सारे कंबोर्ड बनाए हुए हैं।

और दीवार के नीचे बहुत सारे फूल छापे हुए हैं।

और उसके पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

एक टी शर्ट पहनी है और एक सूट पहनी है और तीन जेंट्स खड़े हैं।

इसमें दुर्गा माता का मूर्ति बनाया हुआ है।

आदमी का चित्र है जिस पर लिखा हुआ है ग्रीन --